जिसमें एक पोल लगा हुआ है बिजली का मकान नजर आ रहे हैं।

प्लस हरे भरे घास ओ नजर आ रहे हैं यहा पे एक म--

जैसे कि मैं इस तस्वीर में देख पा रही हूं कि एक फल की दुकान है।

और कुछ हरे भरे भरे पेड़ों से पेड़ है।

जैसे कि मैं इस तस्वीर में देख पा रही हूं कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं।

जैसे कि इस तस्वीर में देख पा रही हूं।

जिसमें ग्रीन क्रीम ब्लैक और ऑरेंज कलर की साड़ी--

एक गेट है कुछ बाउंड्री है।

जैसे कि मै इस तस्वीर में देख पा रही हु।

जिसका नाम सीजी जीरो फोर ढाबा--

यहां बांस से बने हुए बाउंड्री है। इसमें एक मोर बैठा है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यह एक होटल रूम है।

अं और कुछ बटन्स दिए हुए है बिजली के--

अ कुछ टू व्हीलर है एक फोर व्हीलर है।

और यहां पे एक टेबल है जिसमें कुछ क्वेश्चन पेपर्स रखे हैं पेन रखा है बॉटल हैं और मोबाइल फोन है।

जैसे कि मैं इस पिक में देख पा रही हूं यह एक बुक डिपो है।